एगो कार छै ऊपर मे लटकेलो दिखाई दे छै।

चर्च छै शायद च चर्च और बाहर मे --

अ एकोठा आदमी दिखाई नै दे रहल खे ऊपर-ऊपर लाइट स के व्यवस्था छे बढ़िया रंगीन-रंगीन सफेद कलर के दिखाई दे रहलै --

गैरेज छे जेकरा में की चार चक्का खुल्लो छे एकरा में और पहिया खुल्लो छे।

गाछ सब छै छोटका-छोटका बहुत ऊंचा-ऊंचा बिल्डिंग छै सब एक ही उजला कलर के पेंट करलो छै शीशा-उशा लगल छै बहुत सुंदर नजारा लगे --

मरकरी छै और बोर्ड भी लगलो छै एकरा में कुछु छै एगो टेबुल लगलो छै आर कोय ने छै।

और यहाँ पर आपको दिखाई--

दु-तीन टा कस्टमर भी छे दु-तीन टा आदमी भी छे जे कि बनाय रहल छे सैलून बहुत सुन्दर सजावट करलो छे बहुत सारा समान छे।

फेल्ड छे एकरा में जंगल-ओंगल छे गाछ-ओछ सभी छे अउला के और निचा में घास-फुस छे।

अच्छा नजारा अच्छा छै और आदमी सब भी जाय आबी रहल छै ऊपर मे बादल छै बहुत अच्छा लगे छै दिखे में।

पौधा सब छै एगो चारों तरफ से खुट्टा छै उम्म खड़ा करले ओकरा टीन के छप्पर छै।

और एकरा में पानी के भी बोतल छै और सब भी --

छे की अँधेरा में नए ओतना पहचानलो जाए छे के छे नए छे और एगो --

एगो स्टे भारतीय स्टेट बैंक लिखल छै।